और यहां पर बहोत सारी पानी की बॉटल्स भी रखी हुई हैं।

यहां पर एक स्विमिंग पूल भी है।

यहाँ पर बहुत सारी लाइटें भी लगी हैं।

और यहां पर बहोत सारी स्टील की कुर्सियां भी पड़ी है।

यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है।

और यहां पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं।

इसके छत पर बहोत सारी गुंबद बनी हुई है।

दो ब्लैक कलर की है और यहां पर कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं।